पेड़ है विद्यालय के बाहर भी पेड़ है ।

गारमेंट की दुकान है स्नेहा कलेक्शन लिखा हुआ है।

ढेर सारी कुर्सियाँ लगी हैं जो की रेड कलर की हैं नीचे ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है ।

टी-शर्ट पहन रखी है सामने कुछ घर है नीचे हरी घासें हैं ।